यहाँ पे एक नदी है जहाँ पे बड़ा पानी जहाज है। उसमें बहुत सारा आदमी भी है।

यह एक ऑफिस हैं जिसमें बहुत सारा पुरुष है यहाँ पे काम कर रहा है पोस्टर भी लगा हुआ है कुछ सामान भी है जैसे कि चीयर टेबुल और होम थेटर भी है।

एगो अलमारी दिखाई दे रहा है तीन आदमी है।

यह यह एक नदी है जिसमें एगो बड़ा सा नाव है।

यहाँ पे एगो दो गेट सजा हुआ है। बहुत सुन्दर लग रहा है। फूल सब लटका हुआ है। दो बाइक है ऊपर में।